क्या गैरेज है इसमें ?

ये प्राइवेट स्कूल है।

जैसे में यहाँ दूध दही लस्सी --

शर एवं मेन्स ब्यूटी पार्लर है।

इंग्लिश क्लासेज को यहाँ पर बुक मिलता है यहाँ पर सभी स्टेशनरी बुक्स यहाँ पर मिलता है।

खाने पीने को सामान यहाँ पर --

और देखे अ बहुत लम्बा चौड़ा मकान यहाँ पर बन रह --

लक्ष्मी कम्युनिकेशन सेण्टर यहाँ पे सभी के ऑनलाइन --

का सामान भी मिलता है जैसे में न्यू मोबाइल --